पीछे की और कुछ पेड़ हैं और एक लाइट लगी हुई है और आसमान नीला है।

गाड़ीयो पर लोग बैठे हुए हैं। ऊपर कि और एक ब्रिज है। ब्रिज पे खंबों में लाइटों भी लगी हुई हैं।

मशीन पकड़ रखी है और कुछ हथोड़ियाँ भी रखी हुई हैं।

बोर्ड लगा हुआ एचडीएफसी बैंक का। ऊपर एक आईसीआईसीआई का बोर्ड लगा हुआ है।

मूर्ति है जिसमें दो मूर्ति है एक स्त्री और पुरुष जिसने हाथ में एक --

यह एक बड़ी दुकान है जिसमें बहोत सारी रैक बनी हुई हैं।